यहाँ पे एक बिल्डिंग जैसा बना हुआ है जिसके सामने बहार दो स्कूटी खड़ी हुई है दो --

और यहाँ पे बिल्डिंग है जो की बहुत उँची बानी हुई है।

यहाँ गेट के पास भी एक आदमी खड़ा हुआ है सामने स्कूटी खड़ी हुई है दो स्कूटी खड़ी हुई है बगर में भी एक स्कूटी खड़ी हुई है।

एक बहुत बड़ा बोर्ड भी यहाँ पे लगा हुआ है और छोटे छोटे यहाँ पे लकड़ियों में पैंट किये गए डिजाइन बनाये गए है की इधर से रोड है और यहाँ पे चंगा--

लाइन से खड़ी हुई है एक में हात में हात लेके खड़ी हुई है कुछ लड़किया यहाँ पे और पीछे बहुत सारे लोग खड़े हुए है इस्कूल है ये जहाँ पे इस्कूल बस भी खड़ी हुई है।

यहाँ मेला जैसे लग रहा है जहाँ पे काफी लोग यहाँ पे है।

एकाके और काफी लोग है बहुत सारे लोग यहाँ पे है जो की खड़े हुए है।

और यहाँ पे ऊपर लाइटिंग भी लगी हुई है और सारे सामान यहाँ पे चमाके और अच्छे से रखे हुए है सुरक्षित।

यहाँ पे एक ए हरी हरी है हर छेत्र सोन पुर मेला यहाँ पे लिखा है यहाँ पे एक मेला लगा हुआ है जिसमे--

काफी लोग गेट के पास खरे हुए है और बाइक भी खड़ी हुई है और सामने एक लेडिस भी काफी है और अंदर भी काफी लोग है यहाँ पे।

यहां पे अपने हिसाब से सारे बच्चे खड़े हुए हैं कुछ बना रहे हैं पेंटिंग जैसा बना रहे हैं।

ऊपर लकड़ी जैसी लगाई गई है चारो साइड से यहाँ पे लकड़िया लगाई गयी है और ऊपर भी यहाँ मंदिरे बन रहा है।

यहाँ पे बहुत वच्चा घर बना हुआ है बहुत अच्छा घर दिख रहा है सामने से बहत बड़ा भी लग रहा है यहाँ पे ये हवेली जैसा लग रहा है।

और सामने यहाँ पे बाइक बहुत सारि खड़ी हुई है बगल में भी बहुत सारि बाइक खड़ी हुई है ये कोई और लगात करना चाहा रहा है ।

और अगल बगल दोनों साइड यहाँ पे जाली में कुछ रखा हुआ है और सामने भी मुर्तीया जो की फोटो में लगी हुई है सब सब में कपड़े पहनाये गए है।

और सामने यहाँ पे नीचे काफी बाइक खड़ी हुई है कुछ लोग बैठे भी हुए है और बगल में भी कफ--

यहाँ पे काफी सारे गुब्बारे लगे हुए है और ऊपर कटोली वाले लाइट लगी हुई है।

कुछ लोग वहाँ खड़े हुए है और यहाँ यहाँ पे काउंटर कुर्सियां रखी हुई है।

ये बिगड़ा हुआ है दो लोग यहाँ पे है दो लोग कुछ बना रहे है ये फॉर व्हीलर की है ज ओ लग रही है गैरे--

ये एक मंदिर है जहाँ पे काफी लोग यहाँ पे खड़े हुए है गोलाकार का बना हुआ है ये चारो साइड से--

यहाँ पे लोग छट की पूजा के लिए जा रहे है जिसमे से जेन्स अपने सर पे दौरा रखे और--

ये एक झाकी है जो जिसको बनाया गया है और जो ताथिया जैसे निकलता है उस टाइप का लग रहा है ताथिया ही है।

को पकड़ के दो लोग खड़े हुए है एक तो लड़का है और एक सयाना आदमी है।

यहाँ पे एक बैठ का बनाया गया है जहाँ पे लोग बैठे हुए है बैठ ने के लिए बनाया गया है जहाँ पे लोग बैठे हुए है या रास्ता के बगल का है।

यहाँ पे लोग बैठते है और कुछ बच्चे भी खेल रहे है पेड़ के नीचे ऊपर सोलर लाइट जैसा लगाया गया है छोटा सा एक खम्बे में देके--

यहाँ पे बहत सारी न्यू साइकेल और बच्चो के बाली खेल ने वाली बच्चो को चलानी वाली यहाँ पे--

ये वाली गाड़ियां है जो बच्चे चलाते हैं बच्चों के लिए और उससे बड़ी साइकिल भी है यहां पे।

और ऊपर लाइटिंग लगी हुई है लाइट जल रही है कलर वाली लाइट जल रही है।

यहाँ पे एक शॉप है जो की काफी सारा सामान अंदर रखा हुआ है।

सामने अंदर यहाँ पे सामान रखा हुआ बहुत सारा एक आदमी बैठा हुआ है।

और काफी यहाँ पे तस्बीरे भी बड़ी बड़ी तस्बीरे दीवारो में लगी हुई है हर प्रकार की ।

पुतला इंसान बड़ा पुतला बनाया गया है जो की एक हाती बना हुआ है।

त्रि शक्ति पुस्तक भंडार यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर भी बहुत बड़ा बैनर भी लगा है और सामने यहाँ सिर्फ पुस्तक की शॉप है।

यहाँ पे बहत बड़ा ग्राउंड मैदान है जहाँ पे लाइटिंग लगी है और एक मैदान में --

सिर्फ एक दो लोग दिख रहे है दूर वो भी दूर दिख रहे है यहाँ पे काफी लोग है जो दूर दिखाई दे रहे है।

और यहाँ पे ऑटो है चार फॉर व्हीलर भी खड़ी हुई है और लोग भी है जो बच्चे है जेन्स लेडिस सब यहाँ पे है जो खड़े हुए है।

यहाँ पे कलर वाली लाइट लगाई गयी है और एक दो बड़े वाले चर्च है गुब्बारे भी लगे हुए है मोटे वाले और बगल में यहाँ--

बैठ ने के लिए छोटे छोटे कम वो भी रखे गए है बेड का और दिवालो में लाइट लगाई गयी है।

यहाँ पे भी एक मंदिर है और मंदिरो में मंदिर के बगल में यहाँ पे चकोर टाइप में कु--

ये एक मंदिर है जहाँ पे दो लोग बहार खड़े हुए है।

टू व्हीलर खड़ी हुई है लोग भी यहाँ पे मंदिर के सामने है ।

करवाया जा रहा है यहाँ पे और यहाँ पे लोग एक्सरसाइज़ करने आते है और कर भी रहे है बच्चे लोग काफी बच्चे है इसमें जो के एक्सरसाइज़ कर रहे है।

यहाँ पुराना मंदिर दिख रहा है जहाँ पे बहेर पुराने जान का बनाया गया है।

यहाँ पे नदी है और रास्ता है नाद न यहाँ पे काफी नाओ राखी हुई है पानी के पास ।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

बैठे हुए हैं काफी लोग खड़े हुए हैं यहां पे और सामने एक आदमी भी खड़ा हुआ है।

और एक मंदिर भी छोटी सी रखी हुई है।

ये पार्क है जहाँ पर स्लीपर पट्टी लगी हुई है जिसमे बच्चे स फिसल रहे है।

यहाँ पे काफी बैठका रखे हुए है जो की स रूम जैसे मतलब यहाँ पे बैठ के है जो लोग लेते है बैठका--